आप आए आप इस जगह पे आईए और देखिए कितनी सुंदर है जगह ये डेकोरेशन कितना अच्छे से बना हुआ है।

ये देखिए यहां पे ये कार कितनी सुंदर है ये पार्क की ये सड़क देखना कितनी सुंदर है।

पेड़-पौधे कितनी सुंदरता दिखा रहे हैं ये कमरे ये घर ये एक स्कूल का गार्डन है।

बच्चों को भाषण दे रही है और बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं देखिए।

एक यह घर है घर में मोटर साइकिले मोटर साइकिल स्कूटी --

आप आइए और देखिए अपना घर भी बनाइए।

आप यहां पे आइए चाय और कॉफी पीजिए।

सकुल में कैसे झूल होते थे हम और आप मिलके कैसे झूल खाते थे देखिए इस बच्चे के अंदर अपनी तस्वीर देखी --

आइए हम आपको एक नई कलोनी से मिलवाते हैं।

अपने बच्चों के अपने बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े खरीदिए उनको राजकुमारी बनाइए देखिए ये बच्चे --